प्लेटफॉर्म पर टीन सैड पड़ी हुई है और साथ में यहाँ पर एक ट्रैन भी खड़े हुए है ट्रैन पर एक नंबर पड़ा हुआ है एक तीन दो जीरो आठ--

जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ये एक सलून है यहाँ पर एक लड़का बैठा है और उसके सर पर कुछ किलिप लगी हुई है पास --

इसमें एक लड़की बैठी नज़र आ रही हे सामने की तरफ एक शीशा लगा हुआ है शीशे में लड़के की तस्वीर और साथ में दो लड़के नज़र आ रहे है।

दृश्य में मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर देखिये झंडे की रंग्यानी की--

में यहाँ पर देख पा रही हु यहाँ पर एक मज़े रखी हुई है मज़े के ऊपर एक कपड़ा--

ऊपर कुछ लड़के जमीन में बैठे हुहे है और कुछ लड़के क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे रहे है।

में यहाँ पर देख पा रही हु यहाँ पर दुकाने बानी हुई है जिस पर की बोर्ड लगाया गया है और करीमनगर डायरी डिपार्टमेंट डायरी पार्लर लिखा हुआ है।

मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ये एक मकान बन रहा है मकान के ऊपर छत --

मै यहाँ पर देख पा रही हूँ यह एक बहुत बड़ी सी फील्ड है जिसमे--

में यहाँ पर देख पा रही हूँ ये एक लॉन जैसा दिख रहा है जिसमें की चारों तरफ --

काम करते हुए दिखाई दे रहे है पास में बड़े बड़े से पेड़ लगे है एक आदमी बाइक पर खड़ा है आने जाने की रास्ता दी हुई--

में यहाँ पर देख पा रही हु यहाँ पर बहुत सारे मछुवारे नज़र आ रहे है यानी की यहाँ पर बहुत सारे लोग मछली बेच --

टीन सैड पड़ी हुई है अन्दर एक कुर्सी नज़र आ रही है कुर्सी पर एक लड़का बैठा है छत पर पंखा लगा है सामने की तरफ एक शीशा दिखाई दे रहा है।

मैं यहाँ पर देख पा रही हु यहाँ पर बहुत सारे लीची नज़र आ रही है जो की एक थाली में रखी--